यहां पर दरवाजे देखे जा सकते हैं।

यहां पर एक पीछे कार भी खड़ी है और यहां पर कुछ लोग भी हैं।

यहां पर एक रास्ते देखे जा सकता है।

बाहर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिन पर लिखा है सॉफ्ट प्ले ।

यहां पर एक हॉस्पिटल का कमरा देखा जा सकता है।

एक पर लिखा हुआ सेल सेवेंटी पर्सेंट फ्लैट ।